नमस्कार दोस्तों पार्सिंग डेटा पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे डेलीमीटर का इस्तेमाल करके आप स्ट्रिंग अलग करने में स्ट्रिंग के आसपास व्हाईट स्पेस हटाने में
वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलने में
इस ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले हम आपको सलाह देते हैं कि गेटिंग स्टार्टेड विथ लिस्ट्स पर ट्यूटोरियल को पूरा कर लें
अब अपने टर्मिनल पर इपिथॉन टाइप करके आईपाइथन इन्टरप्रेटर शुरू करें

जैसा कि आप देख सकते हैं फाइल sslcटीएक्सटी में प्रत्येक रिकॉर्ड कॉलन से विभाजित फील्ड्स को समाविष्ट करता है
पहला रिकॉर्ड है रीजन कोड फिर रोल नम्बर नाम पहली भाषा द्वितीय भाषा गणित विज्ञान और समाज के अंक और कुल अंक
हमारा काम है रीजन ब के सभी गणित के अंकों का समांतर माध्य निकालना
अब समझते हैं कि पार्सिंग डेटा का क्या मतलब है
इनपुट फाइल से हम देख सकते हैं कि डेटा जो हमारे पास है टेक्स्ट फॉर्म में है
इसे पार्सिंग करने का यही मतलब है कि इसे रीड करना है और इसे उस प्रकार में बदलना है जिसे अभिकलन के लिए इस्तेमाल कर सकें - हमारे उदाहरण में यह संख्याओं का क्रम होगा
हम साफ़ देख सकते हैं कि समस्या फाइल को रीड करने में और टोकेनाइज़ करने में है
स्ट्रिंग्स को टोकेनाइज़ करने के बारे में सीखते हैं
हम पहले स्ट्रिंग निधारित करेंगे
टाइप करें लाइन पारसे थिस स्ट्रिंग हम अब इस स्ट्रिंग को व्हाईट स्पेस पर विभाजित करेंगे
टाइप linesplit जैसा कि आप देख सकते हैं हमें स्ट्रिंग्स का एक क्रम मिला है जिसका मतलब जब स्प्लिट को बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के कॉल करते हैं तो वह व्हाईट स्पेस पर विभाजित होता है
सरल शब्दों में सभी स्पेसेस एक बड़े स्पेस की तरह संसाधित होते हैं
फंक्शन स्प्लिट हमारी पसंद की स्ट्रिंग को विभाजित कर सकता है
इसे आर्ग्युमेंट की तरह पास करके हम इसे कर सकते हैं
किन्तु पहले फाइल से एक नमूना रिकॉर्ड निर्धारित करते हैं
टाइप करें रेकॉर्ड a015163जोसेफ राज एस08304247072244 अब टाइप करें recordsplit हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग सेमी कॉलन पर विभाजित हुआ है और हमें प्रत्येक फील्ड अलग अलग मिली है
हम यह भी देख सकते हैं कि एक खाली स्ट्रिंग लिस्ट में दिखाई देती है क्योंकि यहाँ दो सेमी कॉलन्स हैं जिनके बीच में कुछ नहीं हैं
संक्षेप में यदि स्प्लिट बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के कॉल किया गया तो यह व्हाईट स्पेस पर विभाजित करता है और यदि आर्ग्युमेंट के साथ कॉल किया गया तो दिए गये आर्ग्युमेंट पर विभाजित करता है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
स्पेस को आर्ग्युमेंट के रूप में इस्तेमाल करके वेरिएबल लाइन को विभाजित करें
क्या यह बिना किसी आर्ग्युमेंट के विभाजित करने के समान ही है
टर्मिनल पर टाइप करें recordsplit हम देखते हैं कि जब हम स्पेस पर विभाजित करते हैं बहुत सारे व्हाईट स्पेसेस एक में इकट्ठे नहीं होते और हर बार जब दो स्पेसेस लगातार आते हैं तो एक खाली स्ट्रिंग है
अब यह हमने जान लिया कि कैसे एक स्ट्रिंग को विभाजित करें हम रिकॉर्ड को विभाजित कर सकते हैं और प्रत्येक रिकॉर्ड को अलग अलग पा सकते हैं
किन्तु इसमें एक समस्या है
रीजन कोड ब और व्हाईट स्पेसेस से घिरा हुआ ब दो भिन्न रीजन्स की तरह संसाधित होते हैं
इसलिए हमें स्ट्रिंग के आसपास सभी व्हाईटस्पेस को हटाने का एक तरीका खोजना ही होगा ताकि रीजन कोड ब और व्हाईट स्पेसस के साथ ब एक ही संसाधित हों
यह स्ट्रिंग्स के स्ट्रिप तरीके इस्तेमाल करके मुमकिन है
एक स्ट्रिंग को निर्धारित करें टाइप करे अनस्ट्रिप्ड विथिन डबल क्वोट्स एक लम्बा स्पेस ब फिर से एक लम्बा स्पेस unstrippedstrip हम देख सकते हैं कि स्ट्रिप वाक्य के आगे पीछे सभी व्हाईट स्पेस को हटा देता है
यहाँ पर विडियो रोकें निम्न अभ्यास करें और विडियो पुनः चलायें
जब वाक्य स्ट्रिप हुआ तो उसके अंदर व्हाईट स्पेस का क्या हुआ हम देखते हैं कि केवल वाक्य के अंदर के व्हाईट स्पेस हटे हैं और बाक़ी अप्रभावित हैं
टाइप करें a str व्हाइट स्पेस a strstrip अब तक हम रिकॉर्ड से फील्ड्स को अलग करने और किसी भी व्हाईट स्पेस को स्ट्रिप करने के बारे में काफी जान गये हैं
हमारे पास अब खाली एक अड़चन है स्ट्रिंग को फ्लॉट में बदलना
स्प्लिट और स्ट्रिप ऑपरेशंस एक स्ट्रिंग पर करते हैं और उनके उत्तर भी एक स्ट्रिंग होते हैं
अतः अंक जो हमारे पास हैं अभी भी स्ट्रिंग्स हैं और इनपर गणितीय ऑपरेशंस मुमकिन नहीं हैं
इससे पहले कि हम इन पर गणितीय ऑपरेशंस लागू कर सकें हमें इन्हें संख्याओंपूर्णांक या फ्लॉट्स में बदलना होगा
अतः हम अब स्ट्रिंग्स को फ्लॉट्स में बदलना देखेंगे
हम पहले एक फ्लॉट स्ट्रिंग निर्धारित करते हैं
अतः टाइप करें mark str 125 मार्क intfloatmark एसटीआर typemark एसटीआर टाइप हम देख सकते हैं कि स्ट्रिंग फ्लॉट में प्रवर्तित हो गया
हम इनपर अब गणितीय ऑपरेशंस लागू कर सकते हैं
यहाँ पर विडियो रोकें निम्न अभ्यास की कोशिश करें और पुनः विडियो चलायें
क्या होता है जब आप इंट विथिन ब्रैकेट्स 125 करते हैं अतः टर्मिनल में टाइप करें इंट विथिन ब्रैकेट्स 125 यह एक एरर देता है कि एक पूर्णांक संख्या को फ्लॉट में सीधा बदलना मुमकिन नहीं है
यह फ्लॉट में परिवर्तन का मध्यवर्ती प्रकार सम्मिलित करता है अतः आपको परिवर्तन के निमांकित प्रकार का अनुकरण करना होगा
अतः टाइप करें डीसीएमएल अंडरस्कोर एसटीआर इस इक्वल टो विथिन डबल क्वोट्स 125 फिर एफएलटी फ्लोट विथिन ब्रैकेट्स डीसीएमएल अंडरस्कोर str160 फिर टाइप करें एफएलटी फिर नंबर इस इक्वल टो इंट विथिन ब्रैकेट्स एफएलटी फिर टाइप करें नंबर
इंट का इस्तेमाल करके फ्लॉट को पूर्णांक संख्या में बदलना भी मुमकिन है
अब फाइल को पार्स करने के लिए सभी अपेक्षित यंत्र हमारे पास है चलिए समस्या को हल करते हैं
हम पहले फाइल को लाइन दर लाइन रीड करते हैं और प्रत्येक रिकॉर्ड को पार्स करते हैं
हम फिर देखते हैं कि यदि रीजन कोड ब है और अंकों को तदनुसार संचित करता है

रीजियन अंडरस्कोर कोड अंडरस्कोर स्ट्रिप्ड इस इक्वल टो रीजियन अंडरस्कोर कोड डॉट स्ट्रिप एंड एम्पटी ब्रैकेट्स

अब हमारे पास रीजन ब के सभी गणित अंक लिस्ट math marks B में है
औसत के लिए हमें अंकों को केवल जोड़ना है और लम्बाई से भाग देना है
टाइप करें math marks mean summath marks ब lenmath marks ब math marks mean अतः हमें अंतिम उत्तर मिला
इस प्रकार हम किसी बड़े डेटा को विभाजित और रीड करते हैं और उसपर संगणन क्रियान्वित करते हैं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
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा 1
विभिन्न डेलीमिटर्स जैसे सेमी कॉलन्स का उपयोग करके एक स्ट्रिंग को टोकेनाइज़ करना
split फंक्शन का इस्तेमाल करके डेलीमिटर्स से विभाजित डेटा को अलग करना
3strip फंक्शन का इस्तेमाल करके अतिरिक्त व्हाईट स्पेसेस से छुटकारा पाना
संख्याओं के डेटा टाइप्स को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलना
इनपुट डेटा को पार्स करना और उसपर संगणन क्रियान्वित करना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
आप शब्द पाने के लिए स्ट्रिंग गाइडोरोसम्पाइथन को कैसे विभाजित करेंगे
आप इस वाक्य हेलो वर्ल्ड से अतिरिक्त व्हाईट स्पेसेस कैसे हटायेंगे
3int200 क्या देगा और विकल्प हैं 200 एरर 20 और अब उत्तर देखें 1हम linesplit के रूप में स्प्लिट फंक्शन पर इसे एक आर्गुमेंट के रूप में पास करके स्ट्रिंग सेमी कॉलन को अलग कर सकते हैं
हेलो वर्ल्ड strip स्ट्रिंग के आगे पीछे के अतिरिक्त व्हाईट स्पेसेस को हटाएगा
और अंतिम int200 एक एरर देगा क्योंकि एक फ्लॉट स्ट्रिंग 200 को सीधे पूर्णांक में बदलना मुमकिन नहीं है